इसका इसने टी शर्ट पहना है ब्लैक कलर का और उसके सामने हमें--

पिन छोटी सी गाडिया नजर आ रही है और गाडियों के साइड में हमे दो स्कूटी भी दिख रही है जिस पर एक लड़का बेठा हुआ दिख रहा है।

यहाँ पर हमे एक आदमी नज़र आ रहा है जो रेड कलर का कमीज और ब्लैक कलर की पेंट पहना हुआ है।

वो किसी नज़र ले रहा है और उसके साइड पीछे हमे रेड कलर का सूटकेस और एक बोटल दिख रही है।

इस पिक्चर में हमें कुछ लड़कियां नजर आ रही हैं कुछ लड़कियों ने नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और कुछ लड़कियां--

रंगोली की कलर ग्रीन और पिंक कलर में है और उसके पीछे हमे एक बदा सा गेट दिख रहा है।

येलो है और एक माल ट्रक भी दिखाई दे रही है और यहां पर हमें एक--

और यहा पर हमे कलर कलर के कुछ चेयर्स नज़र आ रहे है।

बार्डन में बहोत बड़े बड़े से झाड़ है और कुछ झाड़ है यहां पर हमे--

के झाड नज़र आ रहे है और उनके साइड में हमे कुछ लोग ठहरेहुए दिख रहे है।

और वहा पर हमे एक कबर्ड भी दिख रही है कबर्ड के उपर हमे रेड कलर की-- कबर्ड

ये एक दूकान है जो स्टेशनरी की दूकान दिख रही है यहाँ पे हमे --

ओए यहाँ पे हमे एक फाउंटेन नजर आ रहा है फाउंटेन के आजू बाजू कुछ लोग ठहरे हुए दिख रहे है।

बिल्डिंग के सामने हमे और एक बिल्डिंग दिख रही है उसी भी लाइटिंग से सजाया हिआ है।

यहा पर हमे एक बोर्ड नज़र आ रहा है।

वहा बोर्ड के साइड में हमे एक स्टेप नज़र आ रहे है।

यहां पर हमें एक लड़का लड़की ठहरे हुए भी दिख रहे हैं और यहां पर हमें एक बड़ा सा ब्रिज भी नजर आ रहा है।

और उनके पि साइड में एक पूल नजर आ रहा है उसके साइड में हमे अंदर कुछ झाडिया भी दिखाई --

और यहाँ पे हमें एक पार्किंग का भी गेट दिख रहा है और यहाँ पे कुछ क शिप भी है जिसके सामने हमे दो आदमी भी दिख रहे है।

ये यहाँ पर में क रेड कलर का स्टैंड भी नज़र आ रहे है जो बाइक रेड कलर स्टैंड पे--

ठहरे हुए है एक लडके ने हेलमेट ने पेहना हुआ दिख रहा है और उनके उपर कुछ फ्रें नजर आ रह ह--

यहाँ पर हमे एक कार नजर आ रही है एक कार के साइड मे एक आदमी ठेरा हुआ दिख रहा है।

पेट्रोल पंप के सायद दीवार के उपर ब्लुन्स और कुछ स्टार्स लगे हुए दिख रहे है।

टेबल के उपर एक बैग और कुछ बोथल भी दिख रहे है और हमने उसके हाथ पीछे एक आदमी नजर आ रहा है उसके साइड में कुछ चिप्स भी दिख रहे है।

यहा हमे एच_डी_अफ_सी बैंक का बोर्ड नज़र आ रहा है और उसके--

हमे यहाँ पर एक बड़ा सा झूमर नजर आ रहा है और हमे बहोत सारे झूमर भी नजर आ रहे है कुछ फ्लावरस भी बनी हुई है।

यहाँ पर हमे एक ये स्कूल नजर आ रही है स्कूल के स्कूल का हमे एक ग्राउंड भी दिख रहा है ग्राउंड में हमे कुछ बच्चे ढहरे हुई दिख रहे है।

यहां पर हमें एक गेट भी नजर आ रहा है जो ब्लैक कलर का है गेट के अंदर हमें एक कार नजर आ रही है जिसका कलर --

और इसमें दो पिलो है और कुछ बेड शीट है और यहाँ पे हमे लैंप भी नज़र आ रहा है।